छोटी छोटी घासें लगी हुई हैं जमीन पे चुन्नी दिखाई दे रहा है।

कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई दे रही है हमें घर के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

थोड़े ही की दूर पे नाली गई हुई है।

ऊपर पंखा लगा है। डेकोरेशन वगैरा हो रखा है।

यह जोतने के लिए काम आता हैं ये नीली कलर का है।

यहां नीचे फर्श पे रखा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बाहर की तरफ एक वॉचमैन बैठा है और एक और आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे बहोत सारी सजावटे हो रखी है रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें गेट का नजारा दिखाया गया है।

जिसमे हमें घास वगैरह उगे दिख रहे है।

इस तस्वीर में हमें किसी फंक्शन का नजारा दिखाया गया है।

बहुत सारी घासे दिख रही है अंदर की तरफ कोई जानवर खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें होटल दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

ये दिवाल ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है नीचे फर्श बना हुआ है।

यहां पे अंदर की तरफ तीन चार लोग खड़े हुए हैं।

और ऊपर की तरफ स्टेज लगा हुआ है जहां पे बहोत सारे लोग नाच गा रहे हैं।

और आगे की तरफ भी किसी चीज का दुकान है।

और इस दुकान की खिड़कियों में जाली लगी हुई है।

जहां पे एक आदमी दो व्यक्ति एक बैग टंगे हुए एक हाथ में लेकर आगे की तरफ जा रहा है।

इस तस्वीर में हमें जंगल का नजारा दिखाया गया है।